पार्टी की तरह लग रहा है जहां सभी लोग आके इस आनंद का मजा उठा रहे है ।

यह एक बैठक है जहाँ छ: से सात सदस्य है जहाँ एक को प्रोवाइड या गिफ्ट दे रहे है।